यहाँ पर एक पिलर दिखाई दे रहा पिलर के ऊपर एक गुम्बद -सा बना हुआ है जिस पर रंग बिरंगी--

यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दीवार दिखाई दे रही है जिस पर एक बोर्ड लग रहा है जिस पर कुछ लिखा हुआ हैएक सैनिक का पोस्टर लगा हुआ हैं नीचे का फर्स दिखाई दे रहा है जहाँ पर गमले रखे गमले में हरे -भरे पौधे लगे हुए हैलाईट --

हरे -भरे पेड़ दिखाई दे रहे है बिजली के टावर दिखाई दे रहे है झंडे दिखाई दे रहे है जोकि पीले और नीले रंग के पेट्रोल पंप साइड है जिसकी नीचे एक कार खड़ी हुई है सफ़ेद रंग की है एक और कार दिखाई दे रही हैं ।